यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिख रहा है यहाँ पे खाफी गेह के स्टाफ नजर आ रहे हैं जहाँ पर कम करते हुए दिख रहे हैं और वहाँ पर हाथ में फाइल्स दिख रहे है वहीं पर मोबइल दिख रहे हैं और बोतल

लाइट दिख रहे है ए.सी. नजर आ रही है जो व्हाइट कलर की है और --

और काफी हरे पेड़ दिखाई दे रहे है और नीचे कुछ कार नजर आ रहे है बाइक्स दिख रहे है वही पर काफी लोगो की भीड़ वहां दिखाई दे रही है।

एक महिला एक आदमी है जो पुरस्कार प्रदान करके और एक है वॉटर बॉटल वहां पर रखे हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर जो सीलिंग है व्हाइट कलर की दिख रही है।

और चेयर्स वहां पर दिख रहे हैं जो लाल कलर --